पेहने हुए हैं और सर पर कैप लगाए हुए हैं पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं ऊपर रंगीन आसमान दिख र--

सामने सड़क दिख रही है जिसके दोनों साइड बहोत से पेड़--

है और कुछ बिना रंगीन और ऊंचा पहाड़ दिख रहा है जिसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट और--

लखा है पीछे कत्थई कलर के परदे लगे हुए हैं और ऊपर एक ए_सी लगा हुआ है सामने एक--

सामने एक कुर्सी दीख रही है जिस पर कुछ कपड़े डले हुए हैं जिनके पीछे एक खिड़की है जीस्से भी--

कोनों पर दो एक एक आदमी बैठे हुए हैं जिनके हाथ में--

ईंटो का चबूतरा बना है जो सीमेंट की ईंटे दिख रही है साइड में रेत का ढेर--

सामने एक दीवाल बनीं है जो लाल कलर की है अंदर बहोत सारी कुर्सियां--

नी हरी खिड़की दिख रही है और सामने एक मशीन रखी हुई है जिसमें पीछे मोटर ल--

कलर की है जिसमें पंखे और ट्यूबलाइट दिख रही है और सामने तीन शटर --

पेड़ दिख रहे हैं और एक साइड दिवाल बनी है जो कत्थई कलर की दिख रही है जिसके पीछे बहोत--

दिख रही है जो ऊपर अह कहीं क्रीम और नीले कलर की कांच लगे हुए हैं जिसमें बाला जी बिजनेस सेंटर --

दिख रही हैं और पीछे एक दीवाल है जो ग्रे कलर की है जिस पर दो फोटो लगी हुई है और--

एक म अ गुरुजी है जो पीले कपड़े पहने हुए हैं पीछे गोल्डन कलर से डिजाइन बनी हुई है और ऊपर सफेद--

अं सफेद पट्टी है जिसपे दो प्लस बने हुए हैं जो ग्रीन कलर के हैं और साइड में कुछ मोटरसाइकल दिख रही--

क्रीम कलर की पट्टी बनी हुई है। साइड में एक छोटी टेबल बनी है जिस पर दो पानी की बोतल --

दिख रही है और नीचे जगह क्रीम कलर की और दीवाल भी क्रीम दिख रही है थोड़ा सा बेड दिख रहा है और--

लगा है और एक लड़की के हाथ में एक डंडा है जिसमें से पिला धुआं निकल--